रोजे-रोज आते हैं अपनी शिकायत ले के अगर आदमी रहता है तो पुन प्रत्यक्ष रूप से शिकायत करते है अम्म ना रहने पे दान-पटी में --

रगन का टेम्पू लगा हुआ है और आदमी अपने-अपने पसिंजरो के खोज में तलाश में इधर-उधर पूछ-ताछ कर रहे हैं और कुछ देर के बाद ट्रैन आने वाली है वो आएगी यात्री अपने-अपने --

अनुभवी डॉक्टर डॉक्टरनिया यहाँ उपलब्ध हेय कई प्रकार की बीमारियाँ यहाँ --

कई सारे बगीचा है और एक महिला सेक्रेटरी के रूप में अपने फूल-पत्ती और बगीचे को सिंचाई कर रहे है।

देखिए देखिए एक भयानक मॉल नजर आ रहा है।

गाइज सारे मजदूर मिक्चर मशीन के साथ मसाले बना कर ए तन मन धन से ए निर्माण कर रहे हैं। आने वाले सयम में इस कंपनियाँ --

प्रसिद्ध एक सैलून है जिसमें क्रीम अ क्रीम है बाहर डब्बे में और कई प्रकार के क्रीम पाउडर है और तेल है ए देख रहे है ये बहुत अच्छे से बनाये गये है।

का इंतजार कर रहे है कुछ परिवार का और कुछ छन अब घ घाट की ओर निकलेगे और वहाँ पर पूजा पाठ करके --